उसके सामने से ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे थोड़े-थोड़े पानी सा भरा हुआ है नीच रेत दिख रही है और यहाँ पे सामने से सूरज दिखाई दे रहा है और यहाँ से कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे ऊपर बादल दिख रहे और यहाँ पे दिखने से लगता है की शाम हो रही है।